गाड़ियां दिख रही है गेट दिख रहे हैं ऊपर सीट दिख रही है पेड़ दिख रहा है पौधा दिख रहा है डब्बा दिख रहा है।

बेसिंग दिख रहा है नल दिख रहा है हैड वॉश दिख रहा है।

लोग दिख रहे हैं आदमी दिख रहे हैं औरत दिख रहे हैं।

ये एक बड़ा सा पार्क है आदमी दिख रहे--